यहां पर कुछ पेड़ दिखायी दे रहे हैं।

यहां पर कुछ पेड़ दिखायी दे रहे हैं एक नदी दिखायी दे रही हैजहां पर कुछ हरियाली लगी हुई है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बिजली का खंबा गड़ा हुआ है जिस पर लाइट लगी हुई है लाइट दिखाई दे रही है।

यह धारा जैसी दूध धारा घाइ दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक नदी ए एक तालाब सा दिखाई दे रहा है जिसमे खेल स्विमिंगपूल दिखाई दे रहा है। जिस--

यह माता रानी का मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर माता रानी कि मूर्ति दिखाई दे रही है तस्वीर दिखाई दे रही है फूल लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं टाइल्स लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं ।

--जो दिखाई दे रही है केले टंगे हुए है जो दिखाई दे रही है एक सड़क दिख रही है यहाँ पर गोभी रखी हुई मिर्ची रखी हुई है टमाटर रखे हुए है लहसुन रखा हुआ है जो दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ सब्जिया बेच रहे है लोग जो दिखाई दे रहे है कुछ खरीद रहे है जो दिखाई दे रहे है बोरिया रखी हुई है जो दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है जिस पर पन्नी रखी हुई है पन्नी के छोटे से घ तंबू खिचे हुए है यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं।